यहां पर एक लड़का दिखाई दे रहा है जो कि सेल्फी ले रहा है लड़के ने लाल रंग का टी-शर्ट पहना हुआ है और नीले कलर का कैप लगाया हुआ है।

यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के आसपास पेड़ लगे हुए हैं आगे की ओर गाड़ी दिखाई दे रही है पीछे एंगल लगा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि लोहे का --

एक दरवाजा दिखाई दे रहा है इसमें छोटे-छोटे चार कांच दिखाई दे रहे हैं ऊपर नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है।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

एक बाहर की तरफ दिखाई दे रही है लोहे का एक शटर लगा है इसमें नीले रंग का कुछ पुता हुआ है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

यहा पर एक पियानो दिखाई दे रहा है पियानो लाल तथा सफ़ेद दिखाई दे रहा है इसमें बर्तन दिखाई दे रहे है पीछे एक ब्लैक कलर का पट्टियाँ दिखाई दे रहा है काँच दिखाई दे रहे --

ऊपर भी हरे रंग से डेकोरेशन किया हुआ है।

परते लगे हुए हैं जो कि हरे कलर के हैं हरे कलर के ऊपर सफेद रंग के फ्लावर लगाए गए हैं पीछे की तरफ एक पेड़ दिखाई दे रहा है जो कि काफी बड़ा है ।

एक सोफा रखा हुआ है जिसके ऊपर लाल गद्दी लगी हुई है पीछे सफेद पर्दा दिखाई दे रहा है ।

पर बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि पीले कलर से पुती हुई है एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है तथा नीचे की तरफ मिट्टी दिखाई।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

यहां पर एक बैंक दिखाई दे रही है जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जिस पे बंधन बैंक लिखा हुआ है एक लाल रंग का गोला बना हुआ है जिस पर सफेद रंग का डॉट लगा हुआ है।

यहां पर एक सफेद कलर की संगमरमर की मूर्ति दिखाई दे रही है जिसके पीछे लाल दीवार दिखाई दे रही है।

दुर्गा माता की तस्वीर पर नीली साड़ी दिखाई दे रही है पीछे की ओर टेंट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि गुलाबी रंग का है ऊपर एक अ मोर बनी हुई दिखाई।

एस्ट्रल पाइप लिखा हुआ है एक आदमी की तस्वीर बनी हुई है एक दुकान पर पीला और काला बोर्ड लगा हुआ है जिसपर स्कूल लिखा हुआ है।

यहां पे दो बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के आगे कुछ गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है तथा बिल्डिंग के आगे कुछ सामान दिखाई दे रहा है।

पीछे पीले कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है आसपास छोटे-छोटे गमले रखे हैं जिनमें पौधे लगे हुए हैं यहां पर कुछ एंगल में सामान टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर दो जानवर दिखाई दे रहे हैं जिसमें दो जानवर दिखाई दे रहे हैं एक का कलर भूरा है तथा एक का कलर काला है नीचे कुछ मिट्टी दिखाई दे रही हूं।

दिखाई दे रहे हैं एक लोहे की जाली दिखाई दे रही है जिसके पीछे एक झोपड़ी है झोपड़ी पर कभी भी लगा।

यहां पर एक बाजार दिखाई दे रहा है एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि कुर्सी पर बैठा हुआ है आगे कुछ सामान दिखाई दे रहा है आगे --

दुकानें दिखाई दे रही है जिनमें बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है एक आदमी बैठा हुआ है जिसने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है।

एक आदमी जाता हुआ दिखाई दे रहा है जिसने नीले कलर की शर्ट पहनी हुई है आसपास जो सारा सामान दिखाई दे रहा है।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

कुछ बर्तन भी दिखाई दे रहे हैं लकड़ी का फर्नीचर दिखाई दे रहा है जो कि सफेद रंग का और भूरे रंग का दिखाई दे रहा है।